यहां पर एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ब्राउन कलर का पेंट किया हुआ है और साथ में कॉम्बिनेशन नेवी ब्लू कलर का है और एक बहुत बड़ी खिड़की है यहां पर इसमें कांच लगाए हुए हैं और इसके ऊपर कनड़ा में कुछ लिखा हुआ है पोस्टर पर।

और एक टी_ वी है जिसमें बी फोर यू मस्ती चैनल लगा हुआ है कुछ पेंटिंग भी लगाए हुए हैं पिक्चर्स लगाए हुए हैं यहां पर--

काला कलर का इसका पेंट है और एक बड़ी सी ए_सी है यहाँ पर सॉकेट भी है और एक टेबल फैन है जो दीवार पर लगाया हुआ है दो बड़े से ट्यूब लाइट्स है यहाँ पर और ऑरेंज कलर की लाइट भी लगाई हुई है।